लोगों को दिखाने के लिए बड़े हुए हैं एक साथ अ ओवन है और लाइट जल रही है।

कुछ ऐसी मछलियाँ जिनके उपर से उनकी खाल उतार के उनको रखा गया है इसके इलावा बहुत से केकड़े है वो रखे गए हैं।

इसमें एक बिल्डिंग दिखाई गई है जिसमें उसका नाम बिल्डिंग के बाहर लिखा हुआ है बाहर दरख़्त और --

बहुत से पौधे लगे हुए हैं जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं और देवा--

और ये खूबसूरत नजारा पेश कर रहे हैं सारा मंजर आसमान है और धूप निकली हुई है और ना ज्यादा धूप है ना ज्यादा बादल है दरमियाना सा मौसम है।

इसके अलावा यहाँ पर कुछ सोफे दिखाई गई है वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं दो लड़कियां हैं जो इन सोफे पे बैठी हुई है।

दिखाई दे रही है इसके अलावा दरख्तों का जो सहाय है वो घास के ऊपर पड़ा है उसके दायें जानिब --

एक इमारत दिखाई गई है उसके अलावा क्यारियाँ बनी हुई है वहाँ पौधे लगे हुए है।

एक बाघ की तस्वीर है जिसमें घास उगी हुई है और घास को अच्छे से तराशा किया है कुछ झाड़ियों उगी हुई है।

इस तस्वीर में दो डॉक्टर्स को दिखाया गया है जो कि डॉक्टर भी कहते हैं क्योंकि वो जानवरो का इलाज करते हैं वो दोनों --

दोनों डॉक्टर्स जिन्हो ने मास्क भी लगाए हैं एक ने ऐनक भी लगाई हुई है सामने ए_सी भी लगा हुआ है।

हिला पीछे एक बहुत बड़ी इमारत की तस्वीर भी दिखाई दे रही है उसके साथ छोटी इमारतें भी हैं इसके अलावा कुछ --

इसके इलावा इसका दरवाजा भी बंद है उसके बाहर की तस्वीर है बाहर सी चीजो से उसको सजाया गया है और उसकी बिल्डिंग भी तस्वीर में दिखाई दे रही है और --

बक्से के साथ शमी घास के ऊपर खड़ी हुई है इन सबने जूते पहने हैं और --

इसके अलावा सामने की अलमारियां हैं जो कि बंद है। चूल्हे के ऊपर धुए निकालने के लिए जगह बनाई गई है।

यहाँ पर एक बंदा दो पहाड़ों के दरमियान खड़ा हुआ है और अपनी तस्वीर खिंचवा रहा है दो पहाड़ हैं उनके दरमियान थोड़ा सा फस--

सामने एक डब्बा दिखाई दे रहा है इसके अलावा जमीन साफ सुथरी है और दूसरी तरफ बहुत से दरख़्त हैं इसके अलावा घास है जिस को तराशा गया है।

एक दुकान के तस्वीरें के जहाँ सामने मीचेने पड़ी हुयी हैं इसके अलावा कुछ फ्रिज भी हैं एक मेज़ हैं उसके आस पास बहोत सारा का सामन भी पड़ा हुआ इसके --

के अलावा ऊपर इसकी छत हैं जिसमे नीले रंग का रोगन किया गया हैं।

के अलावा उसके बाएं जानी बहुत सी किताबें ऊपर नीचे करके लगाई गई हैं।

दो छोटे रखे हुए हैं इसके आलावा एक मेज़ के ऊपर पड़ी हुयी हैं पास ही एक अंगूठी पड़ी हुयी हैं और एक पड़ा हुआ हैं।

और उनका साया वहाँ पड़ा हुआ है इस जमीन जो है वहाँ पर अ कच्ची जमीन --